हरी मिर्च रखी हुई हैं। भिंडी रखी है। बैगन रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कैप पर बॉय लिखा हुआ दिख रहा है।

पीछे की तरफ दीवार पर ऑरेंज और ग्रीन कलर का पेंट किया हुआ है।

अ साइड में एक बैनर लगा है। बैनर पर राजू चाट वाले लिखा हुआ है।

इमेज में कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

बच्चे कोई स्टेप का प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक लड़का खड़ा हुआ है।

इमेज में एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

एक डॉक्टर और एक कम्पाउण्डर खड़े हुए हैं।

अअ घास उगी हुई है। बिजली के खंभे लगे हुए हैं।

इमेज में एक लडकी एक पोज़ लिए खड़ी हुई है।

पर्दों पर गोल्डन रंग के छोटे और बड़े स्टार लगे हुए हैं।

लडके ने मेरून रंग का शर्ट और जीन्स पहनी हुई है।

काला चश्मा पहना हुआ है।